यहाँ पर काफी अच्छा लग रहा है छोटी-छोटी सी दीवाल दीवा है और यहाँ पर हरा-सा कुछ है।

लोशन रखा हुआ है। क्रीम रखी हुई है और भी ऐसी काफी चीजें रखी हुई हैं।

यहाँ पे कांच का गेट लगा हुआ है। बहोत सारी गाड़ी खड़ी हैं। बुलेट खड़ी हैं। इसमे काला रंग है लाल रंग है।